तराजू लहशन प्याजआलू सब रखे हुए हैं और दो प्रकार के घिरकी रखी है दो लाइट कलर की एक डार्क कलर की --

ये जो डायरी वगैरा से ब्लू कलर का पेन रक रखा है।

पढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैग रखा हुआ है। सर एक स्टूडेंट के तरफ ध्यान दे रहे --

अब चलो हम आपको ले चलते है जहां बहुत सारी लेडीजे खड़ी हुई हैं राशन के लिए मतलब जो गरीबों के लिए --

अलग-अलग टाइप की वर्कआउट कर रहा है मशीनें लटकने वाली उसकी अलग ही बॉडी दिख रही है की वो --

की ये एक शॉप है शॉप में क्या है जो बॉडी रहती हैं ना जिसको कपड़ा पहनाती है उसको कपड़ा पहना दी उसको कपड़ा पहना दी ताकि जो भी ग्राहक है उसको आगे से दिख जाए की हाँ ये ड्रेस अच्छी है तो वो आ जाए --

चेक्स कलर की फर्श लगी हुई है एमा म्यूजिक लगा हुआ है यहाँ अ लोग आते हैं एक्सरसाइज करते हैं म्यूजिक चलता है म्यूजिक चलता है तो उन्हें --

बहुत ही सुकून मिलता है यहां बैठने से हम सब दुख भूल जाते हैं।

अब इसे हम क्या कहते हैं? नदी नदी में क्या सब स्नान कर रहे हैं बहुत सारे लेडिस है जेंट्स सब स्नान करने गंगा नदी।

क्यूंकि ये बहोत फेमस है इसमें भी रखी हुई --

एक आदमी खड़ा हुआ है वो कार को सही कर रहा है एक कार खड़ी हुई हैं वो व्हाइट कलर की है।

अब ये है गया फिश ट्रेडर मछली बिक्रेता। मच्छम क्या है मछली बेचती है समुद्र से मछली जाती है और यहां मछली बेचती हैं। इसकी --

अब क्या खेत-खेत में क्या सब अच्छे-अच्छे फूल उग रहे हैं यहाँ पर सब उगा रहे हैं उसकी खेती कर रहे हैं लेडीज और आदमी दोनों ही --

अब क्या जाद शत्रु होटल यह अजाद शत्रु होटल हें यहां एक होटल बनाया --

गया है आपको उतकर्ष स्वीट्स एंड नमकीन मतलब होटल के पास इन्होंने क्या करा है आदर्श स्वीट्स एंड नमकीन की अ शॉप भी खड़ी है यहाँ ऑटो खड़ा है ।

धाम में आई हुई है बस धामनी। ये दर्शन कराने आए हुए हैं कार से आए बस से लोग यहां दर्शन करने आए हुए हैं जी --

ये रेलवे स्टेशन इसमें रेलवे स्टेशन के पीछे का --

शिवानी कैरियर शिवानी कैरियर के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लगी हुई है।

अभी जिम में लोग आ रहें हैं जिम कर रहें हैं बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं जो वर्कआउट करतें हैं और कोई बॉडी बनाने वाला आते हैं अपना पेट कम करने रहते हैं पंखे लगे हुए हैं।